पार्किंग पे गाड़ियां लगी हुई हैं और बहोत हि सुंदर तरीके से यहाँ पे--

माल जो है तीन-चार मंजिल का माल है और इसको भी--

यह एक पहाड़ों की जगह है सामने बहोत सुंदर पहाड़ दिख रहे हैं और--

और भी सामान यहां पे रखा हुआ है जो की बहोत ही अच्छा--

कुर्सी भी दिख रही है बहोत सारी मशीन है यहां पे।

आई हुई है। सभी औरतों ने साड़ियां पेहनी हुई है और एक लड़का उनकी सेल्फी ले रहा है और --

ये एक तो ही बहोत बड़ा स्कूल है जो की बहुत ही अच्छे तरीके से--

रखे हुए हैं और बहोत ही बड़ा ये हॉल बना हुआ है ऊपर--